यहाँ पे बहुत सारे पिलर दिखाए पड़ रहे है सामने एक बाइक से आदमी जा रहा है बगल में एक और मकान दिखाई पड़ रहा है।

सामने रोड दिखाई पड़ रही है जो की ग्रे रंग की दिखाई पड़े वहां पर एक मकान भी दिखाई पड़ रहा --

यहाँ पे फूल उल से सजाया गया है यहाँ पर सामने एक ग्रील कलर का दरवाजा दिखाई पड़ रहा है।